जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक हॉल में एक तरफ़ --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक शोरूम है शोरूम के--

रोड के बगल में एक एच. डी. एफ. सी बैंक का ऑफिस है।